ये कोई एक बड़ा सा कॉलेज या कोई गेस्ट हाउस वगैरह कुछ है कॉलेज जिसमें कि बहुत सारे रूम है का है।

जो कि चार्ज करनी होती है चार्ज करने के बाद ये चलता है। इसकी एक टाइमिंग होती है | तब चौबीस घंटे चल जाता है। इतने में काफी लोग बैठ जाते हैं | जिन्हे लेकर हमलोग घुमा स --

यह एक नया टेंपू है जोकि एजेंसी में खड़ा हुआ है लगता है इसे किसी ने खरीद लिया है इसमें माला वाला चढ़ी हुइ है। इसकी पूजा हो चुकी है। नया टेंपू है।

ये एक बड़ी बैंक है इलाहाबाद बैंक हैजो की काफी बड़ी है।

इसमें भी हम लेनदेन कर सकते हैं पैसा जमा कर सकते हैं निकाल सकते हैं लोन ले सकते हैं।

म् मोटरसाइकिल खड़ी हुई है कार खड़ी हुईं हैं। बुक स्टोर के बाहर और ये बुक स्टोर के बाहर एक सीढ़ी रखी हुई है।